यह एक चमकदार हॉल दिख रहा है आपको। बड़ा ही सुंदर और इसमें शीशे लगे पड़े हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर सब लोग जो है अपने का इन्तेजार कर रहे हैं। देखो यात्री लोग आए हुए हैं।

देख रहें हैं आप एक शोरूम बना हुआ है। शाहिल शोरूम है इ बड़ा ही सुन्दर बना हुआ है।

यह ट्रेन का स्टेशन है। यहाँ पर जो है रंग बिरंगी टिने लगी हुई हैं।

नज़ारे खुद देखिए आप। यहाँ पर स्टेशन पर कितनी साफ़ सफाई है। हाथ धोने वाले वन हाथ धोने वाला बनाया है।

ये रेलवे का इस्टेशन का ऊपर का ल्-ऊपर से लिया गया लुक है। आप देख रहे हैं चलती हुई ट्रेन की कैसी स्पीड दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक भारतीय ध्वजा भी लगी हुई है। ये हमारे भारतीयों के लिए बड़ा गौरव --